फॉउन्टेन है फाउंटेन में पानी निकल रहा हैं पानी के ऊपर मछलियां है।

उसके छत पर कुछ हरी-हरी पत्तियां भी दिख रही है इसमें एक गेट लगा है जो की कत्थाई कलर का है।